यह भी किसी शहर का बहोत बड़े जंगल और पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत खतरनाक खाई हैं ।

यह किसी शहर का उद्यान दिखाई दे रहा है जिसमें एक बैठने के लिए चबूतरा --

दो तीन नंदी बैल हैं एवम नंदी बैल का मूर्ति बनाया गया है उसके सामने मे एक बाइक एवम एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।